यहां पर हमें मीटर दिखाई दे रहे हैं विंडोज दिखाई दे रही है ए_सी के--

यहां फोटो में हमें यहां पर नदी का चित्र दिखाई दे रहा है।

और यह हमें रास्ता दिख रही है रास्ते पे से कुछ व्हीकल्स जा--